लेडीज का बना हुआ जिसको एक फ्रॉक पहनाया--

और ये सारा गेंदा फूल जो है पीले कलर में है।

मॉल के अंदर का दृश्य है बहुत सारा सामान।

पेंट किया गया है सामने एक छोटा सा पार्क बनाया गया है।

और ऊपर में बड़ी भवन जो जैसे हैं।

और मैदान के में ढेर सारे पेड़ पौधे हैं।

दुकान के ऊपर नेशनल ऑटो का बोर्ड लगा हुआ है।

दृश्य है इस ऑफिस में के दीवाल पे ए_सी लगा हुआ है।

सड़क पे दो लड़के साइकिल चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं।